यहाँ पे एक बहुत घर दिखाई दे रहा है ये छत बहुत उँचा दिख रहा है।

यहाँ कुछ उत्सव हो रहा होगा जैसे लग रहा है यह जगह बहुत सुंदर सजाया गया है।

यहाँ पर बहुत सारे कुर्सी लगे हुए हैं और यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े घर भी दिखाई दे रहा है और इन घरों को बहुत सुंदर लाइट से सजाया गया है।

जिसमे कपड़ा लगाया है आप लोग भी बहुत सारे दिख --

बहुत सारे चिड़िया भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक घेराव भी दिखाई दे रहा हैं ।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

मैदान तरफ दो पशु भी दिखाई दे रहे हैं और--

और यहाँ पर बहुत ऊंचे- ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे है और बहुत छोटे -छोटे भी दिखाई दे रहे हैं ।